स्कूल बैग कुछ डिस्प्ले में लगे हुए हैं।

आर_बी_ए नीचे दुकान के अंदर एक आदमी बैठा है।

यह एक बाइक का शोरूम है।

वही दो आदमी कढ़ाई में कुछ बना रहे हैं।

शिवलिंग पे एक कपड़ा लगा हुआ है।

म्यूज़ियम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक मराठी आदमी ऑरेंज फेटा पहने हुए स्पीकर पे कुछ बोल र--

हॉल में सोफा रखे हुए हैं सोफा पे एक आदमी फुल सूट पहने बैठा है।

स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल के बाहर पेड़ लगे हुए हैं।

सबने येलो कलर की हैट पहनी है वहीं एक आदमी खड़ा है।

वहीं व्हाइट कलर के बोर्ड पे लिखा है बिजली बिल भुगता--

यहां पे मिठाई की दुकान दिख रही है।

डिस्प्ले में अलग-अलग मिठाइयां रखी हुई है।

गार्डन में छोटे छोटे पेड़ कटिंग किये हुए हैं।

ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस में टेबल और चेयर रखी हुई है।

यहां पे नदी दिखाई दे रही है।

होटल के ऊपर चार टावर दिखाई दे रहे हैं नीचे स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

जांच का रूम दिखाई दे रहा है।

कुछ लकड़ी के गेट ए हुए है।

यहां पे पहाड़ का एरिया है।

ग्रे कलर के सोफा रखे हुए है।

ये एक खिलौनो की दुकान है।

गोडाउन में बहुत सारी बोरियां दिख रही हैं।

ये एक जंगल का एरिया दिख रहा--

जहां पे डाइनिंग टेबल और चेयर दिख रही हैं।

साइड के दुकान पे लिखा है श्री बालाजी ट्रेडर्स एंड किराना स्टोर ।

पीले फूल की सरसों उगी है।